इस पे एक लोगो भी बनाया गया है एशियनपेंट का इसको स्विच बोर्ड में लगाया गया है।

दृश्य में हमे बहोत सारे पेंट करने के लिए पेंट्स नजर आ रहे जो की बाल्टी में पैक्ड है।

अलग अलग तरीके के पेंट हैं जो कि यहां पे बाल्टी में पैक्ड हैं।

यह एक माल का दृश्य है और यहां पे चॉकलेट है और भी बिस्किट्स हैं तेले हैं और यहां पे रसगुल्ला बनाने वाला भी सामान दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ किले जैसा भी नजर आ रहा है जिसकी दिवारी में क्रैक आ गया है।

सारे साधु एक ही रंग का कपड़ा पहने हुए हैं और ये मैट पर बैठे हुए हैं।

सामने में सन राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बहुत बड़ी पेड़ नजर आ रही है और उसके सामने में एक पोल लगाया गया है जिससे बहुत सारे तारें जुड़ी हुई हैं और तारें निकल रही हैं काले कलर की तारें हैं।

पे चित्र बनाया गया है दीवार पे मिकी माउस का एक शेफ का एक ड्रैगन का।

इस दृश्य में हमें घर दिखाई दे रहा है जिस घर को बनाने का काम चल रहा है।

और यह एक रोड की गली जैसा दिखाई दे रहा है यहां पे एक रोड लाइट भी लगा हुआ है।

डॉल्स टंडी टंगी हुई दिखाई दे रही है निशा मेहंदी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे कई तरीके के किचन सेट भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं डोरेमॉन है।

किसी के बगल में दो लाइट्स लगाए गए हैं और उनके ऊपर में गमला से फूल लगाया गया है।

यहां पे इस स्कूल को उजले और ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है।

इस दृश्य में हमें एक दुकान नजर आ रहा है अमन श्रृंगार एवं जनरल स्टोर ।

यहां पे बहुत सारे पत्थर और चट्टान नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर में काफी लोग हैं जो की बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं।

इस घर के पिलर पे आइडिया आइडिया करके स्टीकर चिपकाए हुआ है और अंदर में भी आइडिया आइडिया करके स्टीकर चिपकाए हुआ है।

इस घर में एक शटर भी नजर आ रहा है जो कि बंद है और सामने का एक शटर खुला हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहा पे बहुत तरीके के साबुन शैंपू सर्फ दिखाई दे रहे है।

और यहां पे कुछ बुक्स है जो कि नीचे झोले में भी रखी गई दिखाई दे रही है।

एक दुकान का दृश्य है यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर में लिखा हुआ है श्री श्रद्धा स्टोर ।

अंदर में बहोत सारी सामने रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें हमें एक दुकान नजर आ रहा है जिसके ऊपर में कुछ बैनर टाइप्स लगाए गए हैं अलग अलग तरीके में रस्सी में बांधे गए हैं।

यहां पे एक बेड नजर आ रहा है और यहां पे तीन तकिए नजर आ रहे हैं दो तकिए उजले कलर के हैं एक ग्रीन कलर का है।

और यहां पे भी अंदर में वाइट कलर की लाइट --

यहां पे दुकान के अंदर में सामने में कुछ दिए भी जलाए गए हैं और एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

एक दुकान का दृश्य है जहां पे ये इस दुकान में बहुत सारे कार्टून रखे गए हैं।

इस कुकर के सिंबल में भी कुछ नाम लिखे हुए हैं पिजन ।

उसका यूज ट्रैक्टर के पीछे में लगाकर किया जाता है और यहां पे एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

रोड के बगल में दो तीन गाड़िया नजर आ रही है एक स्कॉर्पियो है कुछ ऑटो है।

इस दृश्य में हम एक ऊपर में घर नजर आ रहा है और नीचे में कई तरीके की दुकान नजर आ रही है जिनके ऊपर में बैनर लगा हुआ है।